आसमान दिखाई दे रहा है जिसमें कम रोशनी आ रही है।

अलमारी रखी है अलमारी के ऊपर काफी फाइल वगैरा के --

यहां पे एक प्लम्बर बैठा हुआ है।

यहाँ पे पहाड़ी है पहाड़ी दिखाई दे रही है गुफा टाइप है।

यहाँ पे एक अ मैदान है मैदान में कुछ सुखी घास है और सामने --

आज वाटर बोटल रखी हुई है जूस भी रखा हुआ है एक इंसान का हैंड दिखाई दे रहा है।

लाइट के तार दिखाई दे रहे हैं एक लेडिस यहाँ पे खड़ी है | उसके बगल में घास लगे हुए हैं | छोटे-छोटे पेड़ लगे हैं |

यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है शादी वगैरा का जहां पे --

एक इंसान खड़ा हुआ है यहाँ पर और एक बैठा है | लाल कलर के यहाँ पे खम्भे दिखाई दे रहे हैं |

और यहाँ पर दिवार जो है वो हल्की क्रीम कलर की दिखाई दे रही है | लोहे की जाली भी दिख रही है | बगल में कुछ पेड़ों की पत्तियां दिख रही है।

ये एक दुकान है और दुकान के अंदर लाइट जल रही है जो सफ़ेद कलर की है।

घास दिखाई देख रही है ये जो रूम है ये सफ़ेद कलर का है।

और एक ट्रैन भी है जिसकी खिड़कियाँ लगी हुई हैं |

यहाँ पे दुकान पे बहोत सारी मछलिया रखी हुई हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं डार्कन हरा-हरा |

यहाँ पे एक अ बकेट में टमाटर रखे हुए हैं कुछ अ --

पीले-पीले से दिखाई दे रहे हैं कुछ लाल हो चुके हैं कुछ टमाटर में हल्की से --

यहाँ पे एक लाल कलर का ऑटो खड़ा हुआ है जिसकी व्हील ब्लैक कलर की है।